का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

एक बहुत सारे पेड़ दिखाएं दे रहे हैं।

चार बॉयज दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फोटो में--

रहा है मुझे इस फोटो में--